एक टेबल दिख रहा है कुछ मूर्ति या दिख रही है एक बोर्ड दिख रहा है एक खिड़की दिख रही है।

एक बंदा दिख रहा है। उसके हाथ में एक पाईप है। पानी दिख रहा है। एक बिल्डिंग दिख रही है। गेट दिख रहा है। फूल दिख रहे हैं। कुछ पत्ते दिख रहा हैं। पानी दिख रहा है।